ब्लू कलर की टीशर्ट पहने हुए है और हाथ में वाच पहने हुए हैजोकि ब्लैक कलर में --

इस इमेज में व्यक्ति दिखाई दे रहा है। रेड कलर की टीशर्ट पहनी हुए है। वाइट कलर का पेंट पहेने हुए है बाजु में महिला दिखाई दे रही है।

काहे की साड़ी पहनी हुए है। उस ये व्यक्ति उस महिला को चाभी दे रहा है। एक पीछे ऑटो खड़ा है जो की रेड कलर का है।

इमेज में हमें बहुत सारी लाइटें दिख रही है जोकि नीले कलर में दिख रही है और सारे व्यक्ति दिख रहे है एक व्यक्ति फ़ोन पे बात करते हुए दिख रहा है जो पीले कलर की टीशर्ट पहने हुए है।

और घर पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो एक लाठी रखा हुआ है।

इस इमेज में हमको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जोकि माक्स लगाये हुए है। चश्मे लगाये हुए है। हैंड ग्लब्स पहने हुए है।

और एक व्यक्ति उसके नीचे डला हुआ है जो उसका पैर पकड़े हुए है और वो व्यक्ति ब्लैक कलर का लोवर पहना हुए है।